उनमें से सभी ने साफे बांधे हुए हैं।

जिसके आस-पास चोकोर फ़्रेम --

टू लेयर्स में कपड़े रखे हुए है।

मोर के फोटो लगे हुए हैं और मोर के फोटो के द्वारा इस दरवाजे को सजाया गया है।

यह फोटो मे मुझे एक शोरूम की दिख दिखाई दे रही है जो की एक बाइक का शोरूम है।

यहाँ पर मुझे एक प्लेयिंग स्पेस दिखाई दे रहा है जहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता है।

उसके जींस का कलर काला है।

जिससे की पता चलता है की बैंक मे या तो कोई फंक्शन है या कोई --

जिसमें एक आदमी के द्वारा बाल कटवाए जा रहे हैं।